यहा एक जगह है और यहा बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

और यहा एक आदमी भी बैठा हुआ है।